इस सीतर मै नीला आसमान दिखाई दे रहा है और रुक --

हम नीला आसमान दिखाई दे रहा है बहुत साडी गाड़िया दिखाई दे रही हे फ्लैट फॉर्म बी दिखाई दे रहा हे और छोटा स मोटा सा स्टेशन दिखाई दे रहा हे --

इस चित्र मै नीला आसमान दिखाई दे रहे है बोहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है जो बच्चे है और झाडिया दिखाई दे रहे है खतरों मै से पानी आ रहा है वो पहाड़ छोटे-छोटे करके ऊपर से पानी दिखाई दे रहा है देखने मै बोहोत अच्छा दिखा रहा है।